कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

दो तीन मेज और कुछ हरे कलर की कुर्सियां--

और धरती पर काफी सारे हरे कलर के मैट बीछे हैं।

कुछ लोग खड़े हैं और कुछ महिलाएं भी खड़ी है।

एक व्यक्ति अपनी सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है।

की नाल धरती पर पड़ी है।

कंप्यूटर रखा है कुछ कॉपी किताब रखी है और कुछ स्टैंड रखे हैं।

यह एशियन पेंट कंपनी की बाल्टियां हैं।

प्रे करने की मशीनें खड़ी है।

छोटी छोटी दरवाजों में इनका कुछ सामान भी रखा है।

एक इसके साइड में भी गाड़ी खड़ी है सामने।

यह किसी स्कूल क्लास या ट्यूशन क्लास का फोटो है जिसमें कुछ बच्चे--

कुर्सियों पर बैठे हैं जिन्होंने नीले कलर की टी-शर्ट पहन रखी है और नीचे लोअर पहन रखा है।

मैम बैठी है उसके पीछे एक काले कलर के पर्दा पड़ा है और साइड में एक अलमारी रखी है।

जिसमें काफ़ी सारे थान के कपड़े --

ये एक डंडे पर बैठे हैं ये एक जाल में बंद है।

सामने की ओर से एक लाइट भी आती दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक चॉकलेटी कलर का सोफा दिखाई दे रहा है।

कूड़ा करकट दिख रहा है जैसे लकड़ी पत्तों का ढेर--

टेलर की दुकान पर एक पोस्टर लगा है जिस--

इसमें सामने कुछ भगवानों की तस्वीर रखी दिखाई दे रही हैं और एक कलंडर लटक रहा है।